टेम्पू है जो येलो कलर का दिख रहा है फिर एक साइड में बाइक खड़ा है फिर एक आदमी फोटो खींच रहा है।

तस्वीरे है जो कारीगरी से बनाई गई है फिर एक एक सामने पिलर दिख रहा है जो बहुत चोड़ा उसमे कलश है जिसमे त्रिशूल लगा हुआ है।

फिर एक पेड़ दिख रहा है जिसका तना दिख रहा है और कुछ पत्तीया साइड मे दिख रहै है।

इस इमेज मे मुझे हाइवे का सीन दिख रहा हैं जहां रोड है।

इस इमेजीन मुझे एक रूम दिख रहा है जो यल्लो कलर का है।

इस इमेजी में मुझे एक हॉस्पिटल दिख रहा है जो बहोत पुराना है जो क्रीम कलर का हैं।

जो व्हाइट और शीशे के दिखाई दे रहै फिर एक पोल दिख रहा जिससे एक मोटीसी तार गई है।

इस इमेज मुझे छोटा से मंदिर दिख रहे है जो मंदिर के अंदर कुछ लोग खडे है।

सीढ़ी के पास बहोत सारी बांसे हैं फिर उसमे बहुत सारे झंडे लगे जो बहुत कलरफुल दिखाई दे रहे हैं ऑरेंज गुलाबी कलर के--

और एक गिटार लिए हुए है एक तबला लिए हुए है फिर कुरता पहना है बहुत रंगबिरंग कुरता पहना है।